यह शाम का दृश्य लग रहा हैं।

एक मैदान की फोटो दिखाई गई है।

कपड़ों के दुकान के फोटो दिखाई जा रहे हैं।

डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से है।

फोटो दिखाई गई है इस--

इस फोटो में एक जिम कि--

हैं जिसमें बैंक का नाम फिट रियल बैंक है।

साथ में बैंक का ए_टी_एम भी है।

यहां बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाएं दे रहे है।